नीचे में खड़ा है और यहां पे--

और यहां पे बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और यहां पे लाइट भी लगी हुई है।

इनडोर गेम रूम है यहां पे आप देख सकते हो--